लड़के दिखाई दे रहे हैं बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं।

बिजली की तार दिखाई दे रहे है।

वहाँ पे एक एम्बुलेंस दिखाई दे रही है जिस --

बहोत सारे पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

लोहे का गेट दिखाई दे --

एक पिंक कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। पाइप दिखाई दे रहे है। बिजली के खम्भे दिखाई दे रहे हैं। बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं।

छत पे भी वाइट पेंट पुता हुआ दिखाई दे रा है। सी.सी.टी.वी. कैमरा दिखाई दे रहा है।

पे वाइट कलर पुता हुआ है ऑरेंज कलर भी पुता हुआ है।

गोल्डन कलर का ताज दिखाई दे रहा है गणेश जी की मूर्ति --

बैनर दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसपे येल्लो कलर पुता हुआ --

यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमे --

उसके आस-पास बहोत सारी घास दिखाई दे रही है।

येल्लो कलर की लाइट्स दिखाई दे रही हैं।

वाइट पेंट पुता हुआ है ब्लैक पेंट भी पुता हुआ है फर्श --

यह इसमें घर दिखाई दे रही है बिजली का तार दिखाई दे रहा है।